मंदील (मंदिर) बाटे अच्छा लागत आ घेरल बाटे आगे पानी जाए अच्छा लागता झण्डा टाँगल बा दुगो निके --

लाइट जलता आदमी ऊपर काम करतन लो।

साइकिल बा म् मेहररूआ आवतीया खूबे भीड़ लागल बा।

दुकान ह। अच्छा बा शु शूट बूट बा बड़ी अच्छा लागता।

फ्रॉक टांगल बा लहंगा टांगल बा हर कलर में टांगल बाटे बड़ी निक लागता बगल में घर बाटे ठीक बा।

बा पे नीक लागता पेड़ बाटे फिर अच्छा लागता पार्क ह इ पेड़ बा --